इस इमेज में सभी वाइट कलर की टोपी पहनी है और छोटे-छोटे बच्चे सब पढाई कर रहे है।

पिली कलर की बस खड़ी है और स्कूल के बच्चे वाइट कलर की ड्रेसेस में भी दिख रहै है क्रीम चॉकलेटी कलर का ये बड़ा स्कूल दिख रहा है।

इस इमेज में सभी जगह फूल ही फूल दिख रहे हैं और साइड में दो से तीन--

और एक पिंक कलर का टेंट भी लगा गया है और यहाँ व्यक्ति ने नए-नए ड्रेसेस पहनी है।